उसमे वीनस कार कॉल्स लिखा हुआ है। और सामने दो _तीन स्कूटी या खड़ी हुई है। और एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है।